गुलदस्ते लगे हैं दो मोर लगे हुए हैं बड़े से।

बहोत सारे फूलो से सजाए गया है और अंदर की तरफ जाते हुए और ऊपर मंडप में बहोत ही सुंदर सजाया गया है।

और पार्क में बह़ोत सारे झूले लगे हुए हैं और पार्क के चारों तरफ बाउंड्री मारी गई है बाउंड्री के किनारे--

सामने बादल दिख रहा है सफेद-सफेद और शाम का टाइम है और कोई भी नहीं दिख रहा है --

मैं देख पा रही हूँ एक अस्पताल है सामने रोड है उसके बाद एक और दुकान है दो दुकान है एक खुला हुआ है एक बंद है।

सीढ़ियां दिख रही है पोस्टर लगा हुआ दो बाल्टियां दिख रही हैं रोड --

काले रंग का नीले रंग का और हरे रंग का।

और दीवाल में सटि हुई अलमारी है जिसमें बहुत सारे सामान रखे हुए हैं औजार हैं डब्बे में लाइट --

और वहां पे बहुत सारे झूले लगे हुए हैं और एक बहुत बड़ा रोड लगा हुआ है।

और बेड के ऊपर थकिया रखा हुआ है दो और एक बिस्तर रखा हुआ है मतलब वो एक ओडने वाला रखा हुआ है।

ब्लैंकेट है और उसी के बगल में जस्ट टेबल रखा हुआ है टेबल पे दो बोतल रखे हुए हैं चार्जर है।

और खिड़की है और पर्दा पर्दा लगा हुआ है खिड़की में ।

और बहोत ही सुंदर लग रहा है सफेद रंग का है।

और सामने बहोत सारे पेड़ पौधे हैं और रोड दिख रही है।

एक बहुत बड़ा पार्क है जो कि हिरणों का पार्क है।

शादी का डेकोरेशन हुआ है और बहुत सारे डाइनिंग टेबल लगे हुए हैं ।

एक नया घर बन रहा है और वहां पे काम चल रहा है बहुत सारे मजदूर है यहां पे और छड़ बांधे गए हैं घर के बाहर बहुत सारे।

और सामने एक आदमी मसाला बना रहा है और गेट दिख रही है और--

सीढ़ी भी दिख रही है और सामने यह रोड भी है ।

और चेयर्स पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं।

जो दूसरा घर है वो महरून कलर का बना हुआ है और घर को चारों तरफ से दीवार चला के घेर दिया गया है।

पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं और सामने बादल दिख रही है और धूप भी निकली हुई है।

बहुत बड़ा गेट है और गेट में लॉक लगा हुआ है और गेट के बाहर दो आदमी खड़े हैं।

और गेट के पास लिखा हुआ है चार नंबर और सामने काले बादल दिख रहे हैं रात का समय है।

और दिन का समय है बहोत सारे मजदूर भी है यहां पे काम कर--

रोड नजर आ रही है रोड पे बहुत सारे चरपही नजर आ रहे हैं।

टेंपो नजर आ रहा है बाइक भी है और स्कूटी भी खड़ी है बगल में एक अ घर है।

यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और अगल बगल में--

बहुत बड़ा गैरेज है जहां पे गाड़ियां बनाई जा रही हैं।

कैमरे भी लगे हुए हैं यहां पे फर्श भी टाइल्स का लगा हुआ है।

बहुत बड़ा ऑफिस है यहां पे बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं पंखे लगे हुए हैं।

और बहुत सारे चारों तरफ खिड़कियां हैं।

स्वेटर भी बिक रहे हैं जींस भी बिक रहे हैं और बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं यहां पे और बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं दीवालों पे।

मुझे दिख रहा है रोड सामने और रोड के किनारे-किनारेबहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं और रोड के एक किनारे ग्राउंड है और दूसरे साइड में घर है।

और ये घर के आगे सामने--

चारों तरफ दीवार सिली है छोटी सी।

और सामने रोड दिख रही है पाइप दिख रही है पानी आ रही है और सामने छोटे--